यह एक मॉल है जिसमें बहुत सारे कपड़ा सब दिख रहे हैं और पोस्टर्स भी लगे हुए है।

यह एक फील्ड है फील्ड में रंग बिरंगे--

बहोत सारे पानी भी है और गाछी भी बहोत सारा है।

और बहुत सामान सब धरे हुए हैं।

और रेड कलर की भी बाइक अंदर से लगे है बहुत सारे लोग भी हैं।

लिए सीढ़ी भी बनी हुई है रेड कलर के एक औरत है जो बच्चे को लिए हुए अंदर जा रही है एक लड़का है जो सीढ़ी पे खरी हुई है।

बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं और ए_सी भी है।

लोहा के लगी हुई है उस एक पोस्टर भी रखे लगी हुई है।

यहां पे बहुत सारे है और डॉग भी है।

और कुछ गेट जैसन है खिड़की जैसन--

और एक गणेश जी के थोरा मुंह भी दिख रहा है।

और पेर पौधे भी नजर आ रहे हैं।

डिजाइन से और पंडित जी पूजा करा रहे दो आदमी पूजा पर बैठे हुए हैं और पूजा के सामान सब रखे हुए हैं।

यह एक बुक की दुकान है यहां पे बहुत सारे लोग आए हुए है।